ये एक आदमी दिखाई दे रहा है। ए.टी.एम में एक काँच का दरवाजा लगा हुआ दिखाई दे रहा है। साइड में एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक रोड पर कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है। कार के पीछे एक मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है।

पास में कुछ आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बच्चा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुवी दिखाई दे रही है। मूर्ति के पास लड़का बैग टांगे हुवा खड़ा दिखाई दे रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे की वो फोटो निकलवा रहा हो।